उसके ऊपर एक बैनर लगा है।

वहाँ बहुत बड़ा चर्च है और उसके --

यह इमेज में हमें एक बहुत बड़ा गद्दा दिख रहा है।

जिसमे हमे बहोत तरह अलग-अलग तरह के चीजे दिख रही है।

जैसे पेड़ सूरज और भी अन्य अधिक चीजें दिख रही हैं।

हरे-भरे पेड़ नजर आ रहे हैं।

लडके अपनी फोटो खींचाते हुए नजर आ रहें हैं।

वहां पे एक आदमी फोन पे बात करता हुआ अपना पैर ऊपर करके --